फ्रेंड भी आते है घुमने संगी भी आती है दोस्त भी आते हैं और इस डैम में घुमते और मजे करते हैं।

बिल्डिंग यहाँ फ़ैन भी लगी है घड़ी लगी है इलेक्ट्रिक घड़ी जो डिजिटल घड़ी होतीवो और दीवार घड़ी भी लगी है काफ़ी सारी घड़ी